और लोगों के चेहरे स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहे हैं।

है जिसमें बहोत सारे क्रीम फेस वॉश साबुन नजर आ रहे हैं।

और एक बोर्ड भी दिख रहा है।

जिनका चेहरा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है।

और दुकान के बाहर बहोत सारी बाईके भी खड़ी है।

बिजली के टावर भी दिखाई दे रहे हैं।

और चेयर भी दिखाई दे रहा है।

हरे कलर का मैट भी दिखाई दे रहा है और गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं।